सामने की ओर सीढ़ी नजर आ रही है ब्लैक कलर की यहां पे।

बहुत सारे बच्चे भी यहां पे नजर आ रहे लाइन में लगे हुए।

इसके अंदर जमीन में बहुत सारी घास नजर आ रही है।

बहुत सारे बच्चे भी यहां पे नजर आ रहे हैं जमीन में बैठे हुए और आदमी भी कुछ है यहां पे।

सामने वाल बहुत सारे हरे भरा जंगल नजर आ रहा है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे भी यहां पे लगे हुए हैं हरे हरे।

साइड में मोमबत्तियां भी बहोत सारी जल रही है।

एक झोपड़ी सामने वॉल बनी हुई नजर आ रही है इसमें।

इसके अंदर बहोत सारी चिंगारियां निकलते हुए दिखाई दे रही है।

इसके अंदर एक बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है जिसके अंदर पिलर भी चौखोर में है।

इसमें कुछ छोटी खिड़कियां कुछ बड़ी खिड़कियां भी लगी हैं चौकोर में और शीशा भी उसी में लगा हुआ है।

के सामने एक मेट्रो ट्रेन खड़ी हुई है जिसके अंदर लाल कलर का पेंट हुआ है पूरा ऊपर वॉल पट्टी पे।

छोटे छोटे कुछ गोल वाले पेड़ लगे हुए हैं और कुछ बड़े भी पेड़ हैं।

इसके अंदर एक बड़ी सी पार्क नजर दिखाई दे रही है।

वहीं पे दीवार एक उठी है वाइट कलर की नदी के किनारे।

पीछे वाले सामने की ओर मकान भी नजर आ रहे हैं जिसमें चौकोर मे विंडो भी बहुत सारी है।

स्वीचबोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है इसमें।

पीले कलर की एक बड़ी सी दीवाल नजर आ रही है जिस पे बहुत सारी फोटोग्राफ टंगी हुई हैं।

सारी घास भी नजर आ रही इसके अंदर आ लोहे की बैरीकेटिंग भी हुई है।

साइड में सीढ़ी भी उतरते हुए नज़र आ रही है ओर बहुत सारे पेड़ भी हरे भरे लगे हुए हैं उसमें।

के पीछे एक बड़ी सी ट्रेन नजर आ रही है जिसके अंदर चौकोर में विंडो बहोत सारी बनी हुई है।

एक नीले कलर का बोर्ड लगा है और नीचे वाल बहुत सारा शीशा लगा है।